यहां एक मूर्ती बनी हुई है मूर्ती के अंदर बहोत से डिजाइन बने गई हैं ये गोल की मूर्ती है और यहां पास एक--

ये एक मंदिर की जगह है। जहां पर बहोत से लोग फोटो खिचवा रहे हैं। यहां दो से तीन लोग खड़े हुए है। मंदिर--

पूरा अच्छा सुबह का समय है आजूबाजू प च पंछी उड़ रहे है।

ये कपड़ों की दुकान है ऊपर ए_सी लगी हुई है यहां हर वैरायटी के कपड़े हैं और यहां पास लाल से लेकर लाल नीला पीला हरा गुलाबी--

यहां पास एक कार खड़ी है आजू बाजू बहुत से--

फैन लगाए गए हैं आजू बाजू बहोत से टाइल्सो यहां पर डेकोरेट किया गया है अच्छा डेकोरेशन से यहां लाइट लगाई गई है।

और यहां पर स्लाइडिंग कभी बहोत अच्छे से किया गया है।

यहां लाइटिंग लगी हुई है और ये गाड़ी का स्टैंड हैं।

और यहां पास आजु-बाजू बहुत सी ऑटो चल रही है अ यहां बहोत पेड़ लगी हुई है सामने बहोत बड़ी-बड़ी --

यहां एक सादी हो रही है जहां पास बहोत से बैंचेस रखी गई है एक कांच का स्टूल का रखा हुआ है एक इ एक इंसान बैठा हुआ जो बात कर रहा है एक इंसान--

ये एक हॉस्पिटल है जहां पास इंसान का इलाज होगा आजू बाजू कई सारी लाइटिंग लगी हुई है।

बहोत से पुराने लोगों की फोटो लगाई गई है बाहर एक भारत माता की फोटो है।

पुल बंद है और आजू बाजू बहोत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं स्कूल को अच्छे से सजाया गया है।

बहुत डेकोरेशन की गई है और यहां पर लोग खड़े हुए हैं ढेर सारे और यहां दो लोग सफेद कपड़े में आ रहे हैं।